हम लोग ये कार्ड ले के जाके पैसा पैसा सुरक्षित उठा लेते हैं और जिनमें हमे कोई झंझट नहीं होता है।

यहाँ पे बारिश होने के वजह से पूरा घर में पानी भर गया है और यहाँ पे बिछाली काटने वाला मशीन भी रखा हुआ है और साइकिल भी खड़े किये गए हैं।

और यहाँ पे जनता का भीड़ लगा रहता है। होने पे सभी लोग कोर्ट में आते हैं।